एक बहुत बड़ा पूजा-पंडाल है उसके बाहर कई सारी लोग लाइन में लगी हुई है उसके नीचे सीढ़ी पे भी लाइन में लगे हुए है।

और उसी ए.टी.एम. के ऊपर भी एक दुकान है जो दिख नहीं रहा।

नीम सैलून डेनिम सैलून उसके बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है फिर सैलून के अंदर चार लोग हैं।

उम्म्म उसके ऊपर भी पूल के ऊपर भी एक कोई डिजाइन सा पूल बनाया हुआ है।

छठ का हाट सजाया गया है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं छठ व्रत करने के लिए आई हुई हैं।

उम्म यह बुक स्टोर है बोहोत बड़ा इसमें कई सारा बोहोत सारी किताबें रखी हुई हैं लाइक दृष्टि आइ.एस. की किताबे रखी हुई हैं। एक आदमी बाहर में किताब खरीद रहा है।